सड़क के बीचों-बीच हमें बहुत सारे व्यक्तियों की भीड़ नजर आ रही है।

श्री लाल फार्मा लिखा हुआ है।

ठेले के ऊपर और नीचे भाग में कागज लखे है जहाँ पे फ़ास्ट फ़ूड हिंदी भाषा में लिखा है ।

ये दृश्य में हमें चारों ही ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है।

ऑटो रिक्शा के आगे का भाग सफेद है तथा पीछे के भाग नीला और सफेद है।

इमारत के ऊपर के भाग में अंग्रेजी भाषा में बड़े-बड़े अक्षरों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लिखा हुआ है।